यहां भी एक बहुत खूबसूरत है और यहां पे पूरा पतरे का सेट डला हुआ है।

यहां हम खड़ें हुए दूध की बड़ी-बड़ी केतली वगैरह रखी हुई है।

यहां एक टू व्हीलर का है यहां पे डिफरेंट डिफरेंट ---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

यह एक है यहां पे काफी ज्यादा लगी हुई हैं सबके अलग-अलग कैबिन कंबाइंड किए हुए हैं।

यहां पे एक बच्चा जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई है बच्चे ने टी शर्ट पहनी हुई है।

पेड़-पौधे भी है हरियाली भी है सामने वाली पटरी पर कोई नहीं आ रही है।

एंड यहां पे भी है जिस पे काफी ज्यादा चिप्स कुरकुरे हर तरह की चीजें है यहां पे।

यहां एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स के गमले रखी हुए हैं।

बहुत ही सुंदर सुंदर है अलग-अलग तरीके के सब सब डिफरेंट डिफरेंट है।

पूरी घास जैसे ऊपर तक फैले हुए ये पौधे---

पूरा रेलवे स्टेशन सूना पड़ा हुआ है यहां पे बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है आसपास---

एक बहोत ही ज्यादा पेड़-पौधे यहां पे खंबे वगैरह लगे हुए हैं लाइट के।

टू व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई है लोगों अंदर की ओर जा रहे हैं।

ऑटो रिक्शा भी है ब्लैक कलर की जो कि बैठ के भैया जा रहे हैं जिसके अंदर यहां पे टू व्हीलर्स खड़ी हुई यहां पे एक भैया जिन्होंने---